पर एक पियानो भी रखा हुआ है।

यहां पर स्विम भी करते हैं।

सामने मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे समुद्र दिखाई दे रहा हैं।